पंखे भी लगे हुए है लाइटे भी लगे हुए है बोहोत अनेक प्रकार की मेडिकल दवाईया रखी हुए है बोहोत सारी दवाईया रखी सीसी रखी हुई है।

अच्छी सुन्दर सजावट यहाँ पर लाइटें लगी है यहाँ पर एक हॉल जिसको सजाया गया है बहोत सारे आदमी नजर आ रहे है यहाँ पर बहुत सारे औरतें है नजर आ रही है यहाँ पर बहुत अच्छी सुन्दर सजावट है स्टेज की बहुत अच्छी सुन्दर सजावट की हुई है यहाँ पर बहोत सारे आदमी है जो --